सामने की ओर कई सारी मूर्तियां नजर आ रही--

सामने की ओर एक कांच का दरवाजा भी दिख रहा है ऊपर की हिस्सों में लाइटें लगाई गई है और कुछ पोस्टर भी दीवार पर दिख रहे हैं।

यह दृश्य किसी तालाब का है जिसमें सामने की ओर एक विशाल सा हाथी के ऊपर एक व्यक्ति चढ़ा हुआ दिख रहा है।

कई सारे लोग पानी में डूबे हुए भी दिख रहे हैं।

और नीचे की ओर कुछ पतले पतले गुंबज भी दिख रहे हैं ।

यह दृश्य एक चर्च का है जिसमें सामने की ओर कई सारी गुलाबी रंग की सजावट की गई--

सामने की ओर की सीढ़ी को काले रंग के टाइल्स से बनाया गया--

सामने की ओर के दीवार को हल्की गुलाबी रंग से रंग गया है और जमीन में टाइल्स लगाई गई है।

सामने की दीवार में कई सारे पोस्टर भी टांगे गए हैं।

दान में सफेद रंग की लाइने भी खींची हुई नजर आ रही है और एक व्यक्ति भागता हुआ भी नजर आ रहा है।

सामने की ओर गमले और टब में कई सारे पौधे एवं फूल लगे हुए भी दिख रहे--

और कुछ फल भी नजर आ रहे हैं।

और एक दुकान भी दिख रही हैं।

नीचे की जमीन को सुरमई रंग से रंग गया है और यह समय रात का है।

यह दृश्य किसी मार्ग का है जिसमे सामने की ओर घास उगी हुई है और मिट्टी नज़र आ रही है।

सामने की ओर एक टाइल्स का स्लैब भी नजर आ रहा है।